इसके आस पास बहुत से पेड़ हैं।

यह पिक्चर एक नदी की है।

हमें नॉनवेज दिख रहा है।

पिक्चर एक मेट्रो की है।

इस शॉप में बहुत सारे क्लॉथ्स टंगे हुए दिख रहे हैं।

इस शॉप में बहोत सारे पंखे दिख रहे हैं।

और और रेक्सा के एक आगे एक आदमी और एक पीछे आदमी खड़ा है।

इसके बाहर दो कार खड़ी हैं।

कुछ लोग किसी महंत या पुरुष को ट्रॉक्टर पे सवारी के लिए जा रहे हैं।

यह पिक्चर एक नर्सरी की है।

और इसमें एक मगरमच्छ का मॉडल है।

एक टेबल पे बहुत सा सामान रखा हुआ दिख रहा है।

एक घर दिख रहा है और एक बाहर गार्डन दिख रहा है। --

इसमें से बहुत सी औरतें और बहुत से आदमी छठ की पूजा कर रहे हैं।

और इसमें एक विंडो दिख रही हैं।

इस पिक्चर में हमें एक दो डोर दिख रहे हैं।

बहुत सी बिल्डिंग दिख रही हैं।

एक दो पेड़ भी दिख रहे हैं।

इसमें दो पंखे और चार खिड़कियां हैं।

इस सेंटर में बहुत प्रकार की मशीन दिख रही हैं जिम करने वाली।

यह पिक्चर एक मस्जिद की है।

इस मंदिर के आसपास बहुत से बिल्डिंग्स है।

यह पिक्चर एक ढाबे की है।

इस पिक्चर में हमें बहुत से लोग दिख रहे हैं।

कुछ टेबल और कुछ कुर्सियां भी देख रही है।

बहुत से लोग दिख रहे हैं।

इस पिक्चर में बहुत सी लाइटें दिख रही हैं।

यह पिक्चर एक वॉटरपार्क की है।

पार्क के पीछे एक पानी की टंकी--

मस्जिद के ऊपर एक सायरन दिख रहा है।

इस पिक्चर में एक फुटबॉल दिख रहा है।

इस पिक्चर में एक बड़ा सा पत्थर--